बॉडी के अलग अलग दर्दों का इलाज करता है जैसे की कभी किसी को पेट में दर्द है।

और भी अलग अलग कंपनी के स्पीकर एडेप्टर --

आराम से बैठ के पढ़ सके जो भी है पढ़ना चाहते हैं और एक दूसरे से बात ना करें उनका ध्यान डिस्टर्ब ना हो।

प्लेटस उठाते हैं उसमें अपनी मर्जी का सेलिड डालते हैं।

ऊपर यहाँ पर एक हैंगिंग लाइट और दो हैंगिंग --

यहां पर एक अंकल जी एटलस साइकल पर जा रहे हैं जो साइकल बहुत पुरानी हो चुकी है और जंग लग चुका है।

यहां पर जब लोग कराटे करते हैं तो लोग गिरते हैं लेकिन उन्हें चोट नहीं लगती क्योंकि नीचे--

कुछ लालटेन जैसी चीज को ठीक कर रहा है और ऊपर कई बच्चों ने--

सर्विस सेंटर की फोटो दिखाई गयी हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग--

यहां पे हमे एक ट्रक की फोटो दिखाई गई है जिसमें ये तीन चार लोग--